और इधर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा है स्टूडेंट्स प्राइड ।

इधर एक ए_टी_एम है के बाहर बोहत सारे स्कूटिया और बाइक्स भी लगी हुई है।

थोड़े-थोड़े हम्म पेड़ भी लगे हुए है।

ठीक बाहर बाइक खड़ी है और उधर एक गेट भी लगा हुआ है।

पीले कलर से लिखा हुआ है और ईधर नीचे बहुत सारे लोग आए हुए है और उसके ठीक बराबर में दो लोग सामान ले रहे हैं।